इसमें कैरम बच्चों के लिए क्रिकेट का सामान और कुछ बुक्स दिखाई दे रही हैं।

और यह एक जिम है जिसमें सभी इकठे वर्कआउट करने आए हैं।

एक हॉल की तस्वीर है। जिसमें बहुत सारे लोग पार्टी एन्जॉय कर रहे हैं। जिसमें किसी शादी या फंक्शन का खाना चल रहा है।

कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसे देख कर लग रहा है कि अभी-अभी बनना शुरू हुआ है। अभी नींव ही डाली गई है।

रोड की जगह है जहाँ पर रस्ते में एक आदमी साइकिल चला रहा है। दो ठेले लगे हैं और एक मीनार के जैसी इमारत है जिसमें घड़ी दिख रही है।